उसका हम आउटर व्यू देख पा रहे हैं जो की पोच जो बना हुआ हैं। वो हम देख पा रहे हैं। साथ मे जो साफ सफाई के मामले मे जो काफी अच्छे तरीखे से मैंटेनेंस किया गया हैं। ये हम देख सकते हैं।

वो स्थित है और काफी पुराने टाइम से ये यहां पर स्टेबलेश किया गया ए टी एम है।

काफी अच्छा अ बॉर्डर उन्होंने बनाया है जो होर्डिंग है बोर्ड जो है उन्होंने काफी अच्छे से बनाया है। जो गेट एंट्रेंस है वह भी काफी अट्रैक्टिव सा महसूस हो रहा है। फोटोज काफी अच्छे लगा रखे हैं।

ब्यूटी पार्लर का सीन हम यहाँं पर देख पा रहे हैं। इनॉगरेशन का फंक्शन होगा जहां से देखकर समझ में आ रहा है जिस तरीके से ब्लू व्हाइट बलूंस को सजाकर अं जिस तरीके से डेकोरेशन किया गया है।

काफी सारे म म ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम देख पा रहे हैं यहाँं पर सो प्रोबेबली किसी ब्यूटी पार्लर के इनॉगरेशन का सीन है।

बैठे हुए अ कुछ बच्चे हमे दिख दिख पा रहे हैं यहाँ पे । मछुआरे जो है वो हमे दिख पा रहे हैं यहाँ पे ।

औरंगाबाद में होने वाले किसी एक वेलकम सेरेमनी का अम सीन यहाँ पर देख पा रहे हैं।